यहां पर कुछ सामान धरे दिखाई दे रहा है यहां पर डिब्बे दिखाई धरे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर होटल पे खाना खा रहे है व्यक्ति थाली वैसी दिखाई दे रही है यहाँ पर बिजली का तार लगा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर तीन चार मंज़िल मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे में बहोत सारा मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर व्यक्ति फर्शो पर बैठे दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहुत सारी गाड़ी धरी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी कुर्सि धरी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी कारे धरी दिखाई दे रही है।

मकान बने देखन दिखाई रही है यहाँ पर खम्भा बिजली दिखाई दे रही है।

डब्बा धरे दिखाई दे रहे है यहाँ पर कचड़ा के डब्बा दो दिखाई दो धरे दिखाई दे रहे है यहाँ पर हरे-हरे बैरछा दिखाई दे रहे है यहाँ पर खिड़कियां लगी दिखाई दे रही है।

घर बने दिखाई दे रहे और बहोत सारी मूर्ति बनी दिखाई दे रही यहाँ पर बहोत सारे वृक्ष लगे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत सारा मैदान डला दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे मंदर बने दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारे कलश धरे दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारा चंद्रा बने दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारे खम्भे लगे दिखाई दे रहा है।